उसके ऊपर फोकस किया हुआ है जहाँ भुट्टे छिलकों के साथ रखे हुए है और कलर के दिखाई दे रहे है और पीछे बैकग्राउंड में सब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा हैं।

यह एक कारखाना दिख रहा है इसके अंदर कुछ मशीन लगी हुई हैं पाइपलाइनस भी लगी हुई है इसमे एक बोर्ड भी लगा हुआ हैं और एक बड़ा कंटेनर है और एक मशीन में कुछ बन रहा है।

यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मस्ती कर रहे हैं और जो बड़े है उनका ध्यान रख रहे हैं बच्चों को गार्डन में खेलना बहुत पसंद होता है।

यह किसी कंपनी का फो फोटो दिख रहा हैं यहाँ पर कुछ मशीने दिखाई दे रही हैं और पीछे सीमेंट के पिलर भी बने हुए हैं यहाँ पर एक आदमी एक मशीन को चेक कर रहा हैं।